और जींस पेहनी है एक लड़के ने कैप भी लगा रखी है ठीक है।

एक पुरा लगा पेड़ लगा हुआ है यहां पर।

इस फोटो में एक बोट दिखाई दे रही है बड़ी सी।

इस फोटो में दो चेयर दिखाई दे रही हैं जो ब्राउन कलर की है आगे की तरफ मिट्टी नजर आ रही है और कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

क्या रैक यहां पर ये कल कुछ रखा भी हुआ है जिस पे लिखा है विश--

इस फोटो में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और दिन का समय है।

थोड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक अ जार है जिसके अंदर काफी सारे तोते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में फर्श पर टाइल लगी हुई हैं ठीक है टाइल का कलर क्रीम यानी क्रीम कलर की टाइल लगी हुई हैं।

एक टेबल रखा हुआ है और ऊपर की तरफ काफी सारे झूमर लगे हुए हैं।

एक कैमरा मैन खड़ा है और दो अंकल खड़े हुए जिन्होंने कोट पैंट पहना हुआ है कुछ पेड़ है।

काफी सारे पंखे लगे हैं एक स्विच नजर आ रहा है सामने कैडबरी के डिब्बे--

या कह लो मेहंदी रंग का हरा नही मेहंदी रंग का सूट पहना हुआ है।

और यहां पे लाइट लगी हुई है ठीक है तो ऊपर क्या लिखा है स्पोर्ट्स स्टेशनरी स्पोर्ट्स यानी कि फुटबॉल बैट बॉल यह सब यहां मिलेगा।

एक लड़का खड़ा हुआ है हाथ जोड़ के--